साथ ही हमें छोटी सी नदी दिखाई दे रही है और एक बच्चा है जो झूले पे झूल रहा है पीछे आसमान भी खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और बोहोत दूर तक पेड़-पौधे हैं और पीछे खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है नीचे ज़मीन है जमीन पर कुछ टायर के निशान भी हैं और कुछ मिट्टियाँ भी हैं।

कुछ मकान भी दिखाई दे रहा हैं बिजली के बोर्ड भी लगे हुए स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ--

इस तस्वीर में हम एक नदी देख सकते हैं और साथ ही बगल में खुला मैदान भी देख सकते हैं जहाँ पर बोहोत सारे--